मैदान छा यख मा जी रेलिंग छा गेट छा यख भीतर एक हरयुं-भरयुं मैदान छा वख मा जी कुछ लोग भी छन दिखेण लग्यां एक इमारत छ पीला लाल रंग की स्कूल छा हरयां-भरयां डाला छन।

यखमा जी एक बाटो सू जाण लग्यूं यख फणोम भिट्टो चा यख फणा हर्युं-भर्युं घास च उग्यूँ।